ये शादी में जा रहा है किसी कार की तस्वीर है इसलिए इस कार को बढ़िया से एकदम फूल माला से सजाया गया है।

बिहार यूपी के शादियों में अक्सर ऐसी गाड़ी सजाकर भेजा जाता है।

यहां पे मोबाइल कवर बड्स वगैरह सभी मिलते होंगे।

इसी कारण ये काफी हरा भरा और यहां पे काफी पर्यावरण अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है।

कस्टमर खा रहे यहां पे और यहां पे पानी की बोतल है अक्सर ल-लोग ट्रैवल करने के बाद ऐसे रेस्टुडेंट ढूंढते है कि थोड़ा आराम किया जाए खाया-पिया जाय।

ये भी एक नेचर की ली गई तस्वीर है जिसमें ऊपर बीच पहाड़ों चट्टानों के उपर से पानी गिर रही है।

और कमला पसंद ये ये सब भी वो बेचते रेहते है वहां पे अंदर बिस्किट वगैरा है।

उपलब्ध होती है तो फिर इसलिए ऊपर से नीचे तक सेम दवाइयां मुझे भरी दिख रही है दो तीन टाइप्स की दवाई है जो पूरी भरी हुई है।

आमतौर पे यहां लोग घूमने जाते हैं जैसे यहां पे दो दोस्त घूमने गए हैं।

ये एक फल वाले की दुकान है और यहां पे दिख रहा है कि ये काफी--

अक्सर फार्म में ऐसी व्यवस्था होती है यहां पे बहुत सारे मुर्गे रहते हैं।

इस साइड में लगे चेयर पे बैठे हुए हैं अक्सर सैलून में ऐसा ही होता है।

ऊपर में वेल फर्निश्ड ए_सी भी लगा हुआ है और रूम काफी अच्छे साफ सुथरे दिख रही है।

यह बहोत अच्छी तस्वीर लग रही है इसमें नेस कैफे की तस्वीर दिखाई गई है। हाथ में कॉपी है और काफी अच्छा मौसम है।

ये किताब की स्टेशनरी की दुकान है जहां पे एक एक दुकानदार कुछ बुक्स की एक दुकान खुले हुए हैं।

एक बड़ी बच्ची खड़ी होकर सबको बता रही है समझा रही है।

और बीच में पानी है जो कि काफी इस पिक की सुंदरता को बढ़ा रही है और ये काफी अच्छी पिक है।